इस तस्वीर में मुझे कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है।

यहां मुझे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारी बॉटल दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक गैरेज दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मुझे चांदी की पायल दिखाई दे रही हैं।